ऊपर की और शटर के बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसमे लिखा हुआ है कॉमर्स क्लासेस और यहाँ पर रेलिंग भी लगी हुई है छत पर एक तार भी गया हुआ है।

बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है और यहाँ बिल्डिंग की दीवारों पर बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है जिसमे कुछ लिखा हुआ है।

कुछ खंभे भी दिखाई दे रहे हैं और यहां पर कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं पानी का रंग बिल्कुल ही साफ सुथरा दिख रहा हैं।

एक बिल्डिंग का अंदर का नजारा दिखाया गया है यहां पर दो-तीन कमरे बने हुए हैं कमरों में गेट ब गेट है।

मैदान में बहोत सारे व्यक्ति आ जा रहे है और यहाँ पर एक टापू बना हुआ है नदी के किनारे नदी के किनारो पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे है बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी दिख रहे है।

ये एक रेल्वे स्टेशन का व्यू दिखाया गया है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़-पौधे भी दिख रहे है और यहाँ पर कुछ तीन साइड के घर भी नजर आ रहे है।

यहाँ पर दरवाजे पर बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लाल रंग के अक्षरों से नीट पॉइंट लिखा हुआ है।

बहोत बड़ा मेदान दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बड़ा सा पेट्रोल पम्प भी बना हुआ है और यहाँ पर कुछ दूरी पर कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे है कुछ मोटर साइकिल भी नज़र आ रही है।

यहाँ पर टेबल पर कुछ बर्तन भी दिखाई दे रहे है ऊपर की और छत पर लाइट लगी हुई है।